सेफ्टी जॅकेट भी पेहने हुए हैं यह जॅकेट लाल रंग की है नदी के दुसरे छोर पर कई साडे लोग खड़े दीखाई दे रहें हैं जसमें कुछ लोग नदी से कुछ दुरी पे और कुछ लोग नदी से पास में है।

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक कारखाना है इस कारखाने में कई सारी लाइट जलती हुई दिखाई दे रही हैं जिसमें एक बड़ी-सी स्टील की --

इसमें एक सफेद रंग की लाइट भी जल रही है और यह अंधेरा दीखाई दे रहा है इसमें बड़े-बड़े पहार है चट्टान है और कुछ पहार भी चट्टान काले रंग--

और भी कई सारे मशीने बम-बाजा बजा रहे सभी लोग अपने हाथों में बडे-बडे ड्रम से पीट रहे और कुछ लोग साइड में खड़ा हो रहे और इनके कार्यक्रम को देख रहे।